होइ ये नीली कलर की शर्ट पहनी नीली कलर टॉप पहने हुए है कि यहाँ पे एक डिब्बा भी रखा हुआ है यहाँ पर हरा-भरा मैदान दिख रहा है यहाँ पे पेड़ भी दिख रहे बादल भी दिख रहा है।

ची गाड़ी रखी हैं यहाँ पे अँधेरा दिख रहा हैं की यहाँ पे ऊँची ऊँची बिल्डिंगे भी दिख रही हैं यहाँ पे कुछ कुछ पेड़ भी दिख--

यहाँ पे दो गाड़िया भी रखी हुई है यहाँ पे कुछ पुरुष भी दिख रहे है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैनर भी लगे हुई है के यहाँ पे एक बैंक दिख रही हैगी--